इस तस्वीर में हमें चप्पल की दुकान दिखाई दे रही है यहां पे एक्वा लाइट ये सब चप्पल की ही कंपनी नजर आ रही है।

यहां पे ढेर सारे लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं और पीछे में कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ पेड़ ओड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यह लोग पहाड़ के पास हो के फोटो खिंचवा रहे हैं।

झूला गोल गोल घूमने वाला झूला है जिसको पकड़के हम लोग झूल सकते हैं।

नीचे में कुछ मैंट भी रखे गए हैं बगल में एक पर्दा ऊपर में कुछ पंखे भी लगे हुए हैं।

यहां पे ऊपर में ढेर सारे बॉडी लोशन्स और ढेर सारे रैक भी बनाए गए हैं।

यहां पे थोड़े थोड़े पौधे भी दिखाई दे रहे हैं यहां पे अंदर में एक और ग्रिल है जिसपे अंदर जाने का रास्ता और एक और सटर --

तस्वीर में किराने की दुकान दिखाई दे रही है दुकान के पास में एक बड़े से टेबल पर अंदर में कुछ ग्लास लगे हुए हैं।

अंदर में ढेर सारी टी_वी_एस की बाइके दिखाई दे रही है और यहां पे ऊपर में ग्रीन और पिंक कलर का दरवाजा दिखाई दे रहा--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

इस तस्वीर में किसी चीज का रिपब्लिक का कोई फंक्शन हो रहा है।

इस तस्वीर में किसी चीज की खुदाई चल रही है और यहां पे बगल में ढेर सारे लाल लाल मिट्टी नजर आ रही है।

यहां पे नीचे में धूप भी आ रहा है।

यहां पे बड़ी बिल्डिंग बनने की तैयारी रही है इन्होंने माथा में येलो येलो कलर के कुछ लगायें है।